और दीवाल वार पर हल्का गुलाबी कलर का दिखाई दे रहे हैं ऊपर में पूरा लाइट वाइट नजर आ रहे हैं।

जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहें देखाई दे रहा--

ऊपर में श्री श्री दुर्गा जी का कुछ लिखा हुआ है जो अस्पष्ट रूप से दिखाई--

कुछ हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं हरे--

मंदिर टाइप का रखा हुआ है जो है।

लाइट बत्ती भी जो है धुंधलापन दिखाई दे रहे हैं।

देखने से बहुत धुंधलापन दिखाई दे रहे हैं अंदर में क्या चीज है क्या नहीं है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं लाइट भी हल्का भर दिखाई दे रहे हैं।

घास दिखाई दे रे हैं थोड़ा दूरी पड़ने पर पेड़-पौधे हरे-भरे दिखाई दे रे हैं।

इस तस्वीर में मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि--

इस तस्वीर में मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है की कोमा कइ कोमा की के बोर्ड लगे हुए हैं छोटे बच्चे जो है।

इस तस्वीर में मुझे स्पष्ट रूप से देखा रहे दिखाई दे दिखाई दे रहे हैं कि--

कृष्ण भगवान जो है बांसुरी बजा रहे हैं माथे पर मुकुट लिए हैं और।